अह पेड़ पौधे भी काफी लगे हुए हैं पार्क सारा सारा खाली पड़ा हुआ है टेबल वगैरह कुर्सी वगैरह सब लगे हुए हैं।

और नीचे भी काफी अह पेड़ पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं।

अंदर का ये वीडियो भी काफी अच्छे से खींचा गया होगा पेड़ पौधे भी अंदर काफी अच्छे से लगाए गए हैं लाइटिंग वगैरा भी ध्यान में अच्छे से रखा गया है।

और दिन के समय का लिया गया ये वीडियो अंदर से काफी अच्छा लग रहा है और काफी अच्छा--

और काफी रंग बिरंगी फोटो ये मुझे लग रहा है कि जन्माष्टमी की फोटो होंगी ऊपर की जो डेकोरेशन है वो काफी अच्छे तरीके से किया गया हैं।

यहां पर अंदर काफी खान की व्यवस्था बनाई गई होगी ऊपर की जो लाइटनिंग है वो काफी अच्छी से की गई है।

वो काफी अच्छे से की गई है और देखने में पिक्चर को काफी अच्छी तरह से मतलब--

जहां पर सामने ढेर सारी बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह खड़ी हुई हैं।

जहां पर तीन से चार व्यक्ति खड़े हैं दो व्यक्ति आपस में बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और काउंटर पे कोई लगभग दिखाई नहीं दे रहा है।

पीछे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं दोपहर के टाइम कि ली गई ये वीडियो --

लोग बारी बारी पेट्रोल भरवा कर अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए जा रहे हैं और देखने में फोटो --